यह फोटो एक कैफे की दी गई है।

इस वॉटरफॉल पर लोग नहाने एवं घूमने आए हुए हैं।

मित्तल मॉल एक पी_वी_आर मॉल है।

ये एक शोरूम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का--

यह तस्वीर एक एंबुलेंस की है।

जिनसे चर्च काफी जगमगा रहा है और बाहर लगे पेड़ पर भी लाइटिंग की गई है।

उसके बाजू में एक छोटे बच्चे का सिपर भी रखा हुआ हैं।

इसमें संगीत से रिलेटेड भी काफी सारे सामान लगे हुए हैं जैसे कि डमरू--

यह तस्वीर श्याम बूट हाउस की है श्याम बूट हाउस मे लेडीज वेयर जेंट्स वेयर --

यह तस्वीर एक सीढी की है।

एम_पी ट्वेंटी डी_ए वन सिक्स टू थ्री ।

ए_सी एंबुलेंस है जिसमें चालक का नम्बर एंबुलेंस के सामने दिया हुआ है।

नीचे शोरूम है और ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है।

ये तस्वीर एक मंदिर की हैं।

एवं शॉप में ऑनलाइन पेमेंट भी ली जाती है जिसका स्कैनर टेबल पर रखा हुआ है।

एक वैक्सीन बॉक्स दिख रहा है।

चार ट्रक खड़े हुए हैं जो कि अशोक ले लैंड के हैं।

तस्वीर हैं जो की इंडियन ऑयल कंपनी का है इससे नीले और पीले रंग के फूलों से सजाया गया हैं।